यहां बहुत सारे फल भी दिख रहे हैं।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

यहां सूर्य चमक रहा है यहां पानी भरा हुआ है ।

यहां टीन का करकट भी लगा हुआ है।

यहां कुछ हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां दो प्लास्टिक की कुर्सियां भी रखी हुई है।

यहाँ दीवार में कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।

कुछ लोग भी खड़े हैं यहां पानी भी दिख रहा है।

यहां सफेद रंग से पेंट किया हुआ है।

यहां बहुत सारी बच्चियां कला प्रदर्शन कर रही है।

यहां लकड़ी का बना हुआ काउंटर दिखाई दे रहा है।

यहां अस्टील की सीढ़ियां बनी हुई है।

यहां कुछ तस्वीरे भी दीवाल मे लगी है।

यहां दो पंखे एवं कुछ बल्ब जल रहे हैं।

हरे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं यहां आसमान में बादल दिख रही है।

मकान चारों ओर से घिरा हुआ है यहां एक गाड़ी भी लगी हुई है।

यहां खिड़कियों पर परदे लगे हुए हैं।